लड़के - लड़कियाँ और भी छोटे - छोटे बच् --

बाइके दिख रही है और एक साइकिल --

नीले बहौत किस्म के फूल दिख रहे हैं और यहाँ पे झोड़ी में भी बहौत सारे --

जो कि लड़किया को देख रहे है क्या बना रहे है व --

शर्ट पहने हुए और माथा में गमछी बांधे हुए --

देखने में अच्छी लग रही --

और यहाँ पर मंदिर में लाइटें लगी हुई है। ऊपर में स्वस्तिक बने हुए हैं।

सामान के स्टोर रखे हुए --

और यहाँ पे बाहर में बहोत बड़े अक्षर में लिखे हुए हुवे हैं डॉक्टर बी आर गुप्ता।

बड़े-बड़े अक्षरो मे लिखा हुआ है कुछ --

हरे कलर की है और यहाँ पर एक गेट है लकड़ी की जोकि उसके भी कलर हरे रंग की है ।

रूम जैसे बने हुए हैं और पास में घंटियाँ भी दिख रही हैं।

यहाँ एक चित्र नज़र आ रही है जिसमे एक दुकान है।

हॉस्पिटल का नाम है राजश्री हॉस्पिटल ।

ये सफ़ेद रंग की है और यहाँ पर लोहे के ग्रील है। ग्रील काले रंग की है और ये गेट खुला हुआ है।

ये एक पिक्चर दिख रही है जिसमे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये कोई फिश मार्केट है ।

फैशन हेयर शालून --